वहां पर अंदर एक वाइट कलर की फोर व्हीलर् दिखाई दे रही है सीढ़िया दिखाई दे रही है दोनो तरफ हरी घास दिखाई दे रही है वहां पे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।